छत दिखाई दे रहा है पार्किंग दिखाई दे रही है वहा पे एक वायर भी दिखाई दे रहा है।

एक बाइक शोरूम का है वहा पे बाइक दिखाई दे रही है अ बाइक शोरूम को एक कांच का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक ग्राउंड का है ग्राउंड मे हरी ग्रास घास दिखाई दे रही है वह पे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस चित्र में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति के हाथ में कागज दिखाई दे रहे हैं। वहां पे एक बिल्डिंग का बांध काम चालू दिख रहा हैं।

इस चित्र मे एक ट्राक्टर दिखाई दे रहा है ट्राक्टर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ट्राक्टर को चक्के दिख्ख दिख्खन दिए है वहा पे बासे दिखाई दे रही है।

इस चित्र में गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में गमले दिखाई दे रहे है वहाँ पे पेड़ पौधे हरी घास दिखाई दे रही है।